इस फोटो में मुझे जमीन दिखाई दे रही है।

ऊपर में फैन भी लगाया हुआ है।

यह बच्चा खेल रहा है स्लाइड का रंग रेड है।

सीढ़ी का रंग हरा है।

बहोत ज्यादा लाइट्स लगाया हुआ है।

पंखा भी लगाया हुआ है।

घर का रंग नीला है।

घर के बाहर में इंसान भी चल रही है।

ये फोटो में मुझे कच्चा घर दिखाई दे रही है घर को बेंबू और टीना से बनाया हुआ है।

दीवार में स्विच बॉक्स भी लगाया हुआ है।

फोटो में मुझे एक कमरा दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे घर दिखाई दे रही है।

दरवाजा भी बनाया हुआ है दीवार में स्विच बॉक्स भी लगाया हुआ है।

पीछे में लोहा के सिन सिंटेक्स भी रखा हुआ है।

बाहर में घर का बिल्डिंग भी बनाया हुआ है।

लड़कियां भी नाच रही है।